इस पिक्चर में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

ये एक कपड़ों की शॉप है।

जहां पर लोहे की जालियां लगी हैं।

पास में छोटी-छोटी सीढ़ियां भी बनी हुई हैं।

ओर ये आर_के फॉर्म नाम से हैं।

और हाथ में बंदूके लिए हैं।

मॉल बना हुआ है जो कि वी मार्ट से--

जोकि पीले कलर के कपड़े पहनी है।

सामने एक बड़ी सी लोहे की विंडो --

कुछ गाड़ियां रोड पर चल रही हैं।

बड़े-बड़े पौधे लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक बड़ा सा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय बना हुआ है।

जो कि एक रोड पर--

और कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।